और एक इंसान स्कू बाइक पे बैठा हुआ देख रहा है इन सभी चीजों को।

बिल्डिंग कि बॉउन्ड्री है | यहाँ घास है गन्दगी है यहाँ पर सब आराम से घूम रहें हैं मज़े कर रहें हैं।